ये जो है ये मॉल है लाईबर्टी का यहाँ पर घर बना रूम बना हुआ है बहोत अच्छा पचास परसेन्ट का छुट है ।

जोकि कुल्ला करने वाला सब सामान मिलता है टूटी वाला सामान हर एक समान मिलता है ।

खेत खलियान में होता है जोकि में होता है सब कुछ बहुत अच्छा तरीके से है जो की बहुत शानदार है। बहुत अच्छा ]

काफी अच्छा है मंदिर भी काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है जगह भी बोहोत अच्छा है जो कि देखने में भी बोहोत शानदार लग लगता है जो कि आप लोग भी देख सकते है जो कि बोहोत शानदार जगह है।

यह डी_जे हैं जो कि काफी अच्छा है सब तरह का तूतिया लगाया गया है जो कि काफी अच्छा डिजाईन बसे खूब होगा आवाज़ भी खूब होगा |--